पपीता दिखाई दे रहे हैं सेब दिखाई दे रहा हैं केले दिखाई दे रहें हैं।

गेट दिखाई दे रहा है ऑरेंज दीवार दिखाई दे रही है ।

सुखी घास दिखाई दे रही हैं कंकर पथर दिखाई दे रहें हैं कचरा दिखाई दे रहा हैं लाइट दिखाई दे रहे हैं ।

कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं रेड कलर का एक दुपट्टा दिखाई दे रहा हैं।